ये एक न्यू कॉमर्सिअल विहिकल है इलेक्ट्रिक विहिकल है जो अभी अभी इसको किया गया है अभी लॉन्च किया गया है | कुछ समय के बाद ये --

नाओ जो हैं यहाँ पास खड़ी हुई हैं | दूर दूर से आती है इंपोर्ट --

जो बहुत हीं खूबसूरत तरीके से डेकोरेट की गई है।

जैसे की यहाँ से बहुत दूर-दूर से लोग आते हैं इस शॉप पे फ्रेश फिश खरीदने क्यूंकि यहाँ पास बहुत ताज़ी फिश बैची जाती है।

एनॉग्रेशन में जो डेकोरेशन है वो दिखाई दे रही हैं | जो बैलून अभी हैं वो सभी बहुत खूबसूरत तरीके से बैलून भी लगाए गए --

जिसकी दीवालो को वाइट कलर बनाया गया है साथ में इसका एंट्रेंस गेट पे दो पिलर भी लगाए गए हैं।

बाल काटे जाते हैं जिसका इंटेरियर रेड कलर में रखा गया है और वाइट कलर में इसका एक्सटेरियर रखा गया है | पंखे भी लगे हुए हैं जैसे की दो भाई --

फ्लैग को लहराने के लिए।

ये एक रेस्टोरेंट की डाइनिंग टेबल है।

सभी लोग गांव वाले बहोत ही अच्छी तरीके से इस फेस्टिवल को एन्जॉय कर रहे हैं जैसे की एक है।

रिपेयर किया जाता है जैसे की इसको रिपेयर किया जा रहा है | अभी-अभी इसको पेंट किया जा रहा है रेड कलर की एक कार है ।

दूर-दूर तक समंदर है जिसके बगल स से ब्रिज बनाया गया है ट्रैन का।

ये एक पेट्रोल पंप है जिसको अभी पूरी तरीके से --